मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे खेत दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे नदी दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे कई सारी शॉप बंद हुई दिख रही है।

चित्र में मुझे कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिख रहे है।

चित्र में मुझे कई सारी ग्लास --

चित्र में मुझे रोशनी दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे हर्ष रेडीमेड एवं कॉस्मेटिक एवं संदर्भ प्रसाधन की शॉप दिख रही है।

चित्र में मुझे कई सारी लाइटिंग की फोकस दिखाई--

चित्र में मुझे कई जंगल पेड़ पौधे बहोत सारी दिखाई दे रहें हैं।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे बिल्डिंग पे लाइटें जलती दिख रही है।

बड़े बड़े माले दिखाई दे रहे है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे ऊं कार दिखाई दे रही है।

चित्र मे मुझे टेबल रखी हुई दिख रही है और--